पि_के मोर्टर्स लिखा गया है जो देखने में बोहोत खुबसूरत लग रहा है जिसके आस पास बोहोत सारे पेड़ पोधे है जो दिखने में बोहोत ही अच्छा और खुबसूरत दिखाई--

जो देखने में अच्छा है यहाँ पर रेड कलर का कुछ रखा गया है यह पर बोहोत सारे इंसान है।

ये देखने में खुबसूरत लग रहा है यह पर पिक अप है पिक अप वाइट कलर का है--

यह एक बहार के साइड का फोटो है बहार के साइड में बोहोत सारे गाछ बिच है बोहोत सारे हरे भरे पेड़ पोधे है यहाँ पे एक रोड बनाया गया है।

यहाँ पर बोहोत सारे पेड़ पोधे कोलेज वाइट कलर का है जो दिखने मे खुबसूरत और अच्छा लग रहा है क्योकि यहाँ प एक टावेर भी लगाया गया है छत पर है पानी की टंकी--

यह एक घर के बहार का फोटो है घर के बहार एक बाइक लगा हुआ है कार लगा हुआ है कार वाइट कलर का है।

यहाँ एक दूकान का फोटो है दूकान के अनादर एक इंसान बेठा हुआ है जो की येलो कलर का शर्ट पहना हुआ है।

गाय है जो की दिखने में खुबसूरत है गाय के कलर ब्लैक वाइट इसके आस पास बोहोत सारे पेड़ पोधे है यहाँ पे एक वाइट कलर गाय बेठे हुए है।

वो दिखने में खुबसूरत लग रहा है साथ ही के कान में कुछ लगाया गया है जो की येलो कलर का है जो देखने में खुसुरत--

स्कूटी ब्लैक कलर का है कार लगा हुआ है कार कलर का है एक कार है जो की वाइट कलर क ह--

यहाँ से बादल का थोडा सा पोर्सन दिख रहा है जो देखने में अच्छा लग रहा है यहाँ पे रंग बिरंगे पेड़ पोधे हरे भरे पेड़ पोधे और पहाड़ भी ह--

यहाँ एक रेड कलर का पेंट पहने हुए है यहाँ पर एक इंसान है ब्लैक कलर का पेंट पहने हुए है कंप्यूटर है जो की ब्लैक कलर का है यहाँ पर एक काउंटर बनाया गया है।

यहाँ एक फिल्ड का फोटो है फिल्ड में दो घर है जो की एक घर वाइट कलर और येलो कलर से बनाया गया है एक घर है जो की वाइट कलर--

पोल के ऊपर से ब्लैक कलर का तार गुजरा गया है जो देखने में खुबसूरत और अच्छा लग--

यहाँ पर एक काउंटर लगाया गया है काउंटर पे कंप्यूटर रखा गया है कंप्यूटर का कलर ब्लैक है।

यहाँ से देखने में नज़ारा और अच्छा लग रहा है ब्लू कलर कुछ बोर्ड लगाया गया है जो देखने में खुबसूरत--

यहाँ एक एल्बेस्टर का घर है एल्बेस्टर के निचे पानी लगाया गया है पानी के अनदर बोटल बोहोत सारे रखे गये है।

बोतल को गुजारा गया है जो देखने में खूबसूरत और अच्छा लग रहा है पा नदी में पानी है।

पानी जो की ब्लैक कलर का हो गया है जो देखने में खुबसूरत है यहाँ पर कुछ उगाया जा रहा है जो की एल्बेस्टर का घर है --

यह एक घर के बहार का फोटो है घर के बहार बोहोत सारे पेड़ पोधे छोटे बड़े लगाये गये है फूल का पोधा लगाया गया है।

में दो इंसान है एक इंसान बेठे हुए है एक इंसान खड़ा है उसके पीछे एक और इंसान है।

जोकि ब्लैक कलर का टी शर्ट पहने हुआ है यहां पे एक बल्ब लगाया गया है जो देखने मे खूबसूरत है।

बोहोत साडी लडकिया है जो की येलो कलर ब्लू कलर का ड्रेस पहनी हुई है।

यहाँ पर एक इंसान है जो की बाइक पर बेठे हुए बाइक का खड़ ह बाइक का कलर ब्लैक है यहाँ पर एक टावर है मोबाइल टावर --

यहाँ दो गधे का फोटो है जो की दोनों गधा का कलर ब्लैक है यहाँ पर गेरवा किया गया है जिसका कलर वाइट है।

यह एक घर के बहार का फोटो है घर के जो गहर का कलर वाइट है।

वो देखने में खुबसूरत है इसके आगे पूल्गारा गया है पुल पे एक वाइट कलर का बोर्ड लगाया गया है जिसपे --

वो पूरा ही रूट हम देख के खुबसूरत और अच्छा लग रहा है यहाँ पर बोहोत सारा फूल का पोधा भी लगाया गया है जो देखने में खूब--

यहाँ पर एक पानी की टंकी बनाया गया है जो की वाइट कलर का है इसके सामने सामने बोहोत सारे पेड़ पोधे दिख रहे है जो की घर के आस पास है।

यहाँ पर एक इंसान का फोटो है एक इंसान का पैर दिख रहा है जिसे गया है क्योकि इसे फूट गया--

दिवार पे घडी लगाई गयी है घडी का कलर है वाइट दिवार है जो की दिवार का कलर येलो --

परदे लगाया गया है परदे का कलर वाइट रेड कलर है जो देखने में खुबसूरत और अच्छा लग रहा है।

यहाँ एक घर के बालकनी का फोटो है घर का कलर है जो की रेड कलर है इसका गेट लगाया गया है जो की ब्लैक कलर है।

पोस्टर पर कुछ लिखा गया है पोस्टर का कलर ब्लैक है ब्लू कलर लि गया है छ--

यहाँ पे बहुत सारे नाव है जो की एक येलो कलर का नाव है उसके ऊपर दो इंसान है।

यह एक हॉल का फोटो है। हाल में चेयर रखा गया है। गदा रखा गया है गदा का कलर है जो की--

यह पे काउंटर है काउंटर पे रखा गया है कंप्यूटर है वो देखने में--

यहाँ पर बोहोत सारे झरने भी लगाया गया है गमले में फूल सब लगाये गये है यहाँ पर बोहोत सारे इंसान है।

पीले कलर का बाइक लगा हुआ है वो दिखने में खुबसूरत और अच्छा लग रहा है यहाँ हर हर का कलर है जो की वाइट कलर का घर है।

यहां पे मूर्ति का स्टेच्यू बनाया गया है जोकि कोट पहने हुआ है एक मूर्ति जोकि हॉफ कोट पहने हुआ है एक मूर्ति फुल --

उन कोट पहने हुए है इसके बहार दिसा लगाया गया है जो की वाइट कलर का सुता है यहाँ पर वाइट कलर का कुछ रखा गया है जो की देखने में खुबसुरत और अच्छा लग रहा है।

यहाँ एक खेत खलियान का फोटो है खेत खलियान में बोहोत सारे घास है बोहोत सारे हरे भरे पेड़ पोधे है यहाँ पर खेत में पानी लगा हुआ है।

जो दिखने में खुबसूरत है खेत के बीचो बिच बहुत सारे पेड़ पोधे है जो देखने में खुबसूरत है।

यहाँ पर गमले में फूल लगाये गये है जो की दिखने में खुबसूरत है गेट के कॉलेज के बहार--

एक गेट का बनाया गया है जो की गेट का कलर वाइट है जो देखने में और भी खुबसूरत है।

ऑटो लगा हुआ है जो की ब्लू कलर का ऑटो ह यहां पे इंसान जो की की लाइन में लगा हुआ है कुछ क मीटिंग चल रहा है।

यहाँ पर दीवाल पर मूर्ति का स्टेच्यु बनाया गया है जो की मूर्ति का स्टेच्यु ग्रीन कलर ब्लैक कलर का है जो देखने में खुबसूरत है पुराने जमाने का बनाया गया है।

और यहाँ पर दो चार छे स्टेच्यु बने हुए गये है जो की छे स्टेच्यु में अलग अलग मूर्ति बनाई गया है अलग अलग प्रकार से बनाया गया है जो की दिख रहे है खुबसूरत है।

यहाँ एक पार्क का फोटो है पार्क में एक घर है जो की येलो कलर वाइट कलर रेड कलर से पेंट किया गया है।

घर के बहार बोहोत सारे पुल पोधा है जो की रेड कलर येलो ग्रीन कलर का पेड़ पोधे है।

जो की रेड कलर का साड़ी टंगी हुई है यहाँ पर बोहोत सारे पेड़ पोधे है जो देखने में खुबसूरत और अच्छा नज़रा है।

उड़ीसा यहाँ पर यह लिखा गया है इसके आस पास बहोत सारे पेड़ पोधे है यहाँ पर एक बोलो को लगाया गया है किया गया है।

फूल का कलर वाइट है यहाँ पे माला बनाया गया है फूल का जो कि येलो कलर रेड कलर का फूल का माला बनाया गया है।

एक फायर ब्रिगेड बुलाया गयाहै जिसका कलर रेड है यहाँ पर एक बोर्ड को लगाया गया है जो वाइट कलर का बोर्ड जो देखने में--